इस दृश्य में साइकिल की दुकान दिखाई दे रही है।

यहां पे दो ठेले लगे हुए हैं जिसपे चाय चाय लिखा हुआ हैं।

दो डिश की छतरियां दिखाई दे रही है छड़ नजर आ रहे हैं।

इसपे छत करकट की है बाहर एक ठेला नजर आ रहा है।

स्वेटर की कलर पिंक ग्रीन ब्लू ब्लैक रेड दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में एक बुक शॉप दिखाई दे रही है।

बैलून की कलर ग्रीन ऑरेंज वाइट है।

इसकी गेट दीवारें शीशे की हैं।

दृश्य में एक हॉल की तस्वीर दिखाई दे रही है जहां पे बच्चों की खेलने की कुछ रिक्शे गाड़ियां रखी हुई--

फर्श पे व्हाइट और ब्लैक टाइल्स लगे हुए हैं।

यहां पर रेड ग्रीन जान नमाज बिछे हुए हैं।

सियां नजर आ रही है दीवार का कलर लाइट फिरोजी है।

साइड में बाउंड्री नजर आ रहा है बांस दिखाई दे रहा है।

कुछ आदमी आते जाते नजर आ रहे हैं।

बाइक पर दो आदमी जाता हुआ दिखाई दे रहा है बड़ी सी पेड़ नजर आ रही है।

लोहे की जालियां का भी कुछ बनी हुई है बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।

एक जेंट्स खड़ा है जो पर्पल कलर का शर्ट क्रीम क कलर का पैंट पहना हुआ है।

इस दृश्य से में पेट्रोल पंप की तस्वीर नजर आ रही है।

पैनल गेट की कलर ब्लैक है उस पर सिक्कड़ लगे हुए हैं।

सभी बच्चों ने पर्पल कलर की टी शर्ट पहन रखी है।

दीवाल की कलर वा--

एक घड़ी दिखाई दे रही है नीचे लाइट ग्रीन कलर की--

एक व्यक्ति खड़ा है जिन्होंने ब्लू कलर जैकेट और ब्लू कलर की जींस पहनी है।

दो व्यक्ति खड़ा है उन्होंने वाइट कपड़ा पहना है।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

पीछे पानी का टंकी बना हुआ नजर आ रहा है।